जहाँ से दो आदमी उतर रहे हैं। ये बहुत अच्छी मॉल है।

ये एक मजार का है जहाँ पर सफेद कलर के मज़ार बने हुए हैं। मज़ार की दिवारें सफेद कलर की है जहाँ पर दो बड़े-बड़े घड़ी लगे हुए हैं।

ये वाराणसी के सारनाथ पार्क का है जहां पर ढेर सारे पेड़ पौधे हैं।

ये एक बोहुत बड़ा सा पार्क है। पार्क में दो लड़के खड़े हैं जो आपस में बात कर रहे हैं बगल में ढेर सारे --

ये वाराणसी के सारनाथ का है जहाँ पर छोटे-छोटे पत्थर एवन् से कुछ बने हुए हैं।

साथ मे ढेर सारे पेड़ पौधे हैं। एक बहुत विशाल ऊँची इमारत बनी हुई है जो पत्थरों से बनी हुई है। ये जगह बहुत ही अच्छी जगह --

ये एक मॉल के है। जहाँ पर डेमोनो का बोर्ड लगा है। ये डेमोनो है। यहाँ पर एक अंदर आदमी बैठा है जो कुछ खा रहा है।

ये एक साड़ी की दुकान है। जहाँ पर ढेर सारी साड़ियाँ रखी हुई हैं। एक पुतला लहंगा पहना हुआ है। साथ मे ये दो मंज़िलें शीशे के मकान बने हुए हैं।

ये वाराणसी के सारनाथ की हैं| यह गौतम बुद्ध की मंदिर हैं| यहाँ पे गौतम बुद्ध विराजमान हैं|

चक्र बने हुऐ हैं।

एक शादी समारोह का हैजहाँ पर एक बड़ा सा स्टेज बना हुआ है स्टेज को फूलो और मालो से सजाया गया है।

ये एक मस्जिद के बाहर का है जहाँ ढेर सारे लोग नमाज़ पढ़ रहे है ।

ये कुछ गाड़ियां खड़ी हैं। आस पास छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं।